और दो व्हाइट कलर के रखे हुए है जिसमे पीछे पीले कलर का बना हुआ है। उधर भी पिले कलर का है। इधर कथयी कलर का है और --

गेट नजर आ रहा है जिसमें एक मोटर साइकिल है जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है काले कलर के कपड़े पहन के और इधर एक दुकान दिख रही है स्कूटी दिख रही है --

काला कलर का रखा हुआ है एक लेडिस है जिसने ऑरेंज कलर के कपडे पहेने है बेग टगा हुआ है खिड़की दिखाई दे रही है और क्रीम कलर हुआ है।